जिस पे रेट लिखे हुए है तीन सों पछत्तर पचपन तीन सौ निन्यानवे दो सौ निन्यानवे--

ग्रीन येलो और नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं।

ये स्टेज पे शादी का बहुत अच्छे डेकोरेट किया गया है व्हाईट परदे पे फुल से और दो सोफें लगे हुए हैं।

शिशा रखा हुआ है और सामने में एक छोटी सी बाल्टी रखी हुई है और दो न्यूजपेपर भी रखे हुए हैं नीचे--

और बहुत सारे आदमी और औरतें ऊपर में हैं और एक येलो सूट वाली नीचे में औरत खरी है।

इसमें बहोत सारे प्रोडक्ट रखे गये सेम्पू तेल साबुन-वाबुन--

ये सामने रोड है और उसके पास में--

और टेबल पे बहुत सारे सामान बाल्टी-वाल्टी चुला वुला--

यहाँ पे सोफा लगे है जिसके दो टेबल है--

बगल में बहुत सारे ग्रीन ग्रीन घास है।

ये एक ढाबा है जिसका नाम है न्यू वैष्णव ढाबा और ऊपर भी बहोत सारे बलून्स से--

नीचे में दो दुकानदार बैठे हैं और सामने एक काला कलर का कुत्ता बैठा हुआ है।

और साइड में बाईक साइकेल लगा हुआ है।

बैठने के लिए जगह है और बड़े-बड़े गाछ है।

फूल के गाछ लगे हैं वाइट येलो रेड ।

औरत भी है एक औरत सामने में खड़ी है रैक --

में बहोत ही ज्यादा भीड़ लगे हुए सामने दो बिल्डिंग है व्हाइट और ब्लू में--

और बहत सारे बाइक भी है एक टेम्पो भी लगा हुआ है।

और दुकान में एक आदमी खड़ा है साम--

ये एक बहोत बड़ा स्कूल है जिसका नाम डी सी मॉडल एस आर एस सी सी स्कूल --

अलमारी में बहत सारे रुक रखे हुए हैं।